एक सामने एक गार्डन है बड़े-बड़े उच्चे लम्बे पेड़ लगे हुए है नीचे घास है।

दोनों रफ कुर्सीया रखी हुई है और कांच लगा हुआ बड़ा-बड़ा--

सामने एक छोटा सा शॉपिंग काम्प्लेक्स है जिसके आ उप-- बाहर एक स्पेयर करके सिपीअर बोर्ड लगा हुआ --

पतला से धार के साथ पत्थरों के दोनों तरफ पेड़ - पौधे लगे हुए है।